एक काले रंग का स्कूटर है स्कूटर के ऊपर दो लोग बैठे हुए है।

कुछ कार खड़ी हैं कुछ मशीनें हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं सामने एक कमरा है।

कमरा सफेद रंग का पीछे बहुत बड़ा पहाड़ है पहाड़ के ऊपर हरियाली है।

और एक एंट्री गेट है एंट्री गेट के अंदर एक सफ़ेद रंग का गुरुद्वारा है उसके--

चित्र में हमें एक सड़क दिखाई दे रही है। सड़क पर एक बस खड़ी है बस के ऊपर--

सामने एक बोर्ड है बोर्ड के ऊपर रेस्ट्रो टूर एंड ट्रेवल्स लिखा हुआ है बिजली के खंबे हैं।

कपड़े की दुकान में बहुत सारे कपड़े हैं बाहर दो डमी है डमी पीली और लाल रंग की साड़ियां पहने हैं।

एक कुर्सी रखी है कुर्सी पे एक लड़का बैठा है।

इस चित्र में हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग लाल और सफेद रंग की है बिल्डिंग के सामने--

लिमिटेड एडिशन लिखा हुआ है कथाई रंग से--

साथ में खड़े हैं लाल रंग की सीटियां हैं।

नीले रंग का अंदर काच का फ्रिज है दरवाजे हैं।

लाल रंग की गुलाब रखे हुए हैं सफेद रंग के फूल है आसपास बहुत सारे पेड़ हैं।

सफेद रंग की शर्ट पहना है साइड में एक हरे रंग का पर्दा है ऊपर शेड है।

इस चित्र में हमें एक गोदाम दिखाई दे रही है गोदाम में बहुत सारी मशीनें हैं।

शेड डला हुआ है कुछ बिजली के काले रंग के तार हैं सफेद दीवारें हैं।

इस चित्र में हमें एक रूम दिखाई दे रहा है रूम में एक स्टेज है।

कुछ से सामने कार खड़ी हैं एक कार सफेद रंग की है एक नीले रंग का टेंपो है।

सामने पार्क है पार्क में हरेंग रंग की घास है बहुत सारी काले रंग की साइड।

इस चिद्र में हमें एक स्टेज दिखाई दे रहे हैं स्टेज पर--

आप और सफेद रंग का फर्नीचर है ऊपर बल्ब लगे हैं कथई रंग के टेबल से कुर्सियां हैं।

एक काउंटर है काउंटर के पीछे एक आदमी बैठा हुआ है बाहर कैश लिखा हुआ है।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

कद्ध रंग के पर्दे हैं सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं लोगों के हाथ में एक कागज है।